यहाँ पर दो आदमी दिखते चार पॉँच सो आदमी दिखते हुए जाते हुए बहोत सारे आदमी दिखते हुए सु सुखदेव महा मखलेदन लॉ--

दूसरी तरफ से इहे पर मकान दिख रहे और यहाँ पे खिड़की दिखती हुई जहाँ छुपाई--

यहाँ पर एक आदमी पेड़ है के सामने वहाँ धरी हुई शटल लगा हुआ है चिल्कोडेन बॉक्स में और अ सामने एक आदमी कुछ सौदा दे ले रहा हैं।

यहाँ पर एक पीड़ा देखता हुआ बच्चा बोहोत से आदमी दिखते मेला लगा हुआ है बप्पा का अ वह पर मेला की गुब्बारे भी लगे हुए है झूल झूलऊना भी लगे हुए हैं ।